और ब्लू कलर का गाड़ी भी है।

एक बिल्डिंग है जिसका कलर येलो कलर है।

लड़के ने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

ऊपर एक हैंड बैग टंगा हुआ है वाइट कलर का।

मुझे यहां दो लड़के दिखाई दे रहा है।

एक ने ऊपर की ओर प्वाइंट करके बैठा हुआ है।

और एक ब्लैक कलर का शू दिखाई दे रहा है।

और मुझे स्टोर के अंदर एक चेयर दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक बैनर लगा हुआ है उस बैनर में लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी लिखा हुआ है।

बिल्डिंग का कलर ऑरेंज येलो है।

एक लड़की दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां कई सारी लड़कियां दिखाई दे रहा है।

उस पेन दुकान का नाम है ब्रिटिश पेन ।

बाहर दो वाटर सिंटेक्स ब्लू और ग्रीन में रखा हुआ है।

और साइड में बच्चे भी हैं और पीछे दो ब्ल्यू कलर के कपड़े पहने हुए लड़के दिख रहे हैं।